चर्च के निचे दरी बिछाई गयी है जो की लाल और हरी है।

यह एक स्कुल गेट बहार का फोटो है यहां बहुत सारी स्कुली बच्चियां स्कुल के अंदर जाती हुई दिख रही हैं।

यहाँ कुछ शिक्षक और कुछ शिक्षिकाएं भी खड़ी है इसके गेट को लोहें से बानया गया है यह माकन उजले रंग से रंगा गया है।

यह एक क्लास रूम का फोटो है इसमे बहुत सारे बच्चे स्कुल ड्रेस में अपने डेस्क और बेंच पर बैठ कर पढाई कर रहे है।